और यहाँ पे लैट भी जला रही हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा है देख --

और ये बहुत बढ़िया से बना हुआ प्रेबिट और आगे में बहुत बढ़िया पार्किंग बनी हुई है।

और यहाँ पे बादल छाई हुई है और हरी-भरी जंगल भी दिखाई दे रही है छोटा-छोटा बिक्ष लगी हुई है।

बिहार में रखिये गई है।

और यहाँ पे ह हमरपूर महा एच.पी. लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है गाड़ी से आ गया है ।

और आदमी भी इसमें घुसा हुआ है इसमें हर चीज मिलता है किताबें टेबल भी लगी हुई है बहुत मस्त --

और ये है छत के नियम वाला बच्चा लोग का है जो की रखता है और ये बहुत बढियाँ से बंधी हुई है।

यहाँ पे कारपेट भी रखा गया है और यहाँ पे हरी-भरी वृक्ष भी है और ये घर भी बनी हुई है अच्छी तरह --

ये सी और ई लिखा हुआ है और ये तीन गिंगू भी लिखा हुआ है।

और देखिए बहुत उत्साहित लग --

और ये है बहुत अच्छी-सी बिल्डिंग बनी हुई हैं और ये बिल्डिंग देखने में बहुत सुंदर लगती हमको।

और यहाँ पे इसके बन माला होगा लड़का-लड़की का और यहाँ पे बहुत बढ़िया से सोना के जैसा --

और अति सुंदर लगता है --

और यहाँ पे डांस भी कर रही है और यहाँ भी बहुत बढ़िया से अथी बनी हुई है महल जैसी।

और ये मंदिर भी दिखाई दे रहा है और मंदिर बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में --

और ये भी बहुत मस्त लगती है देखने में और अति सून --

ये ये छचकाने वाला है और यहाँ पे हरी-भरी फिलम भी दिखाई दे रहा है।